स्कूल में आप आगे और देख सकते हैं काफी इसमें क्लासों के आपको खिड़कियां दिखाई देंगी खिड़कियों के आप पीछे देखिए कुछ और भी आपको बढ़िया आपको खिड़कियां और नीचे --

पीछे एक टावर भी बना हुआ दिखाई रहा है और टावर के अलावा भी इसमें बहुत कुछ दिख रहा है जैसे की पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक शहर का है।

यह कैसा भवन दिखाई दे रहा है जिस भवन के ऊपर आपको ओम लिखा हुआ दिख रहा है बड़ा है और यह जो है इसमें भी पीला बैकग्राउंड है।

इसमें आपको दो वैन भी दिख रही है और दोनों वैन जो है वो रेड कलर के है और इसमें जो है इन्होंने रेड फूलों को जो पेड़ भी है वो भी लगा रखे --

का और नीचे आपको कुछ काउंटर भी रखा है और ऊपर आपको हैप्पीनेस्स कर के कुछ लिखा हुआ है।